यह दुकानों में अनेक प्रकार के सामान रखे गए --

यह बस के उँउँ नीचे एक आदमी भी यहाँ पर खड़ा है।

यहां पर बहोत सारे बच्चे भी हैं यह बच्चे के गार्जियन भी आये हुए हैं।

यह सड़क के किनारे बहुत ही बड़ा होटल है यह होटल में अनेक प्रकार के भोजन मिलते हैं यह होटल में बहुत से आदमी यहाँ पर भोजन करने के लिए आये हुए हैं ।

टायर भी बिखरे हुए हैं यह गाड़ी खूब मिस यह मैकेनिक ठीक करते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे टायर रखी गयी हैं ।

यह ग्राउंड है इस ग्राउंड में बहुत सारे छोटी छोटी जंगल है इस ग्राउंड में बहुत सारे कचरे है यहाँ पर बहुत से आदमी यहाँ पर कचरे फेंकते है यह ग्राउंड के बगल में बहुत ही बड़ी घर है यह घर एलवेस्टर के है यहाँ पर --